और मेन गेट बना हुआ है ग्रीन एंड रेड में पिलर बना हुआ हैपिलर के जो डिजायन लकड़ी के डिज़ाइन में बना हुआ है पिलर |

एक गाड़ी खड़ी हुई है दो लोग खड़े हुए है बाइक के साथ और एक ट्रक है इंडियन ओइल का और सामने बिल्डिंग बनी है और ऑफिस बना हुआ है इन्डियन ऑइल का।

ढोलक रखी रखी हुई है पियानो रखा हुआ है कुछ लोग बैठे हुए है और भी लोग खड़े भी है।

और निचे डिज़ाइन दिया गया-- घास की डिज़ाइन दी गई है हरी कलर में और एक आदमी खडा हुआ है।

काफी जगह में रोड बना हुआ है और गम घर बने हुआ है सामने की तरफ पेड़ है पौधे है।

और नीचे मेट बिछा हुआ हैं मेट का कलर जो है ब्लू रंग में मेट है और उसमे लगी हुई है।